सामने ये घर जैसे बने हुए हैं लोगो को बैठने के लिए एन्जोय के लिए। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं बहोत ब्यूटीफुल लग रहा है ये सीन --

ये हम देख सकते हैं दो बस खड़ी हुई है जिसे वो पैसेंजर्स जाते है।

काफी अच्छी डिजाइनर बनी हुई है खिड़की दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

यहां हमें बोहोत सारी औरतें दिखाई दे रही हैं इकट्ठी।

जो कि छठ पूजा के लिए उपस्थित हुए हैं एकत्रित हुए हैं और पीछे बहुत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है। तालाब के ऊपर --

बैठी हुई है लेडीज़ पूजा कर रही है गन्ने रखे हुए हैं पेड़ लगा हुआ है।

औ झालरों से कुछ सजा सा हुआ है औ यहाँ पे सभी लोग पूजा कर रहे।

गाडियां खड़ी हुई हैं मोटर साइकिल स्कूटी । एक आंटी निकल रही हैं। बोर्ड लगा हुआ है दुकान का।

ये हमें ज़ू की पिक्चर ज़ू दिखाई दे रहा है। जहां पर हम शेर को देख रहे है। जहाँ शेर सामने जाली लगी हुई है लोहे की पेड़ लगा हुआ है।

अंदर घर दिखाई दे रहा है कार खड़ी हुई है एक जिप्सी खड़ी हुई हैं।

यहाँ हमें एक बाउंड्री दिखाई दे रही है जिसके सामने एक टूटा -फूटा -सा घर दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ हम देख सकते हैं मॉल दिखाई दे रहा है हमें या फिर हमरी जरूरत की सारी चीजें दिखाई दे रही हैं।

यहां पे अलग अलग अ अ डिज़ाइंस की अ शृंगारदानी देख सकते है।

इससे सामान अ डिलीवर किया जाता है।

कि हमारी काफी यूस्फुल रहती है रखा हुआ है अंदर।

प्राइवेट रूम भी लिया हुआ है। जिसमे--

यहां हम देख सकते हैं कि लोग बहोत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। माइक लगा हुआ है।